रोड दिख रही है हरे कलर का बोर्ड दिख रहा है साईकल दिख रही है साइकल पे एक आदमी बैठा हुआ है।

इ-रिक्शा दिख रही है एक बहुत बड़ी ईमारत दिख रही है झाड़ दिख रहे हैंआसमान दिख रहा है पौधे दिख रहे हैं।

रोड दिख रही है रोड पे कुछ इस समय हरियाली दिख रही है झाड़ दिख रहे है झाड़ पे ऑरेंज कलर के फुल लगे हुए दिख रहे है।

पी.ओ.पी. करी है।

एक को लाल कलर का शर्ट पहना है एक को हरे कलर का टी-शर्ट पहना हुआ दिख रहा है दुकान के बाहर लाल कलर का बोर्ड है अ लोहे की रेलिंग दिख रही--